फोटो मुझे दिन के समय का दिखाई दे रहा है इस फोटो में मुझे एक गार्डेन दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ टेबल्स लगी हुई दिख रही है इसमे मुझे टाइल्स लगी दिखाई दे रही है।

फोटो दिन के समय का फोटो है इस फोटो के अंदर मुझे ग्रास नजर आ रही है मुझे इसमे कुछ प्लांट्स नजर आ रहे है मुझे एक वोल नजर आ रही है इस फोटो मे मुझे एक घर नजर आ रहा है जो की व्हाइट कलर दिख रहा है।

ये फोटो मुझे दिन के समय का दिखाई दे रहा है इस फोटो मे एक रोड नजर आ रहा है।

मुझे फूटपाथ पर कुछ पोस्टर लगे दिखाई दे रहे है और इसमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ घर नजर आ रहे है।

टने हुए दिखाई दे रहे है जिसमे बहुत सारा पानी दिख रहा है।

ये फोटो सुबह के वक्त का दिखाई दे रहा है। इस फोटो मे मुझे एक बस खड़ी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर मे। मुझे इसमे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे जो की ठंड के कपड़े पहने हुए दिख रहे है।

इसमे मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है जो की अपना वर्कआउट करते हुए दिख रहे है। मुझे एक कार्पेट दिख रहा है जो की पिंक येल्लो और ब्लू है।

जो की साड़ी पहनी है व्हाइट कलर की मुझे इसमे एक गेट नजर आ रहा है जिसमे धूप की रोशनी आ रही है इसमे मुझे रेड कार्पेट दिखाई दे रहा--

के किनारे पर कुछ पेड़ दिखाई दे रही है हरे कलर के उसमे मुझे कुछ सिडिया लगी दिखाई दे रही है मुझे उन सिडियो पे एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।